बहुत सारे उप वाहन भी दिख रहे है टैक्सी वगैरा भी दिख रही है बहुत हालाँकि बहुत बहुत ज्यादा बिल्डिंगे दिख रही है।

और यहाँ पर कुछ अजीब टाइप की गाड़ी बाइक दिखाई दे रही है और बाइक मे बोहोत सारा सामान भी दिखाई--

नीला का केयर का पत्ता भी इसमें रखा हुआ है कुछ आगे खाने का भी दिखाई दे रहा है जाने के लिए बहुत इसमें रास्ता भी दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई पेट्रोल पंप लग रहा है शायद उसमें डीजल से डाल रहा है और वो अपना पत्थर उठाए हुए हैं मतलब बढ़ते हुए पेट्रोल पंप पिए--

खाली खाली बैठने के लिए चेयरें दिख रही है बहोत एक दो तीन चार पांच छे सात से अंदाजा लग रहे है और बाहर के लिए रस्ता भी खाल मतलब ता भी है वहाँ पर भी दो चेयर दिख रही है और --